जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में मतलब एक पार्किंग एरिया है अ मतलब वहां पे आ ऐसा लग रहा जैसे कोई फोक संगीत चल रहा है वहां पे बहोत सारे लोग भी हैं।

यहां वो मतलब बहुत सारे लाइट्स भी जल रहे हैं और पानी का फव्वारा भी निकल रहा है।

और साइड साइड में मतलब कुछ लोग बैठे हैं।

जैसा की आप इस चित्र में देख रहे हैं अं मतलब ये कोई अं मतलब दुकान है।

और मतलब वहां पे काउंटर में बैनर भी लगा हुआ है।

जहां पर दो आदमी खड़े हैं एक शर्ट पहना है एक टी_शर्ट पहना है अ और ये लोग एक जीन्स पहन रखा है एक लोवर पहन रखा है और दोनों खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं।

और एक लेटर बॉक्स भी रखा हुआ है रोड के साइड में--

इसमें कुछ लोग अपने-अपने हिसाब से जीम कर रहे हैं।

यहां पोस्टर रखे हुए है कोई ब्लैक है कोई फिरोजी है कोई ब्लू है।

और बहुत बड़ा ये बॉल है और बहुत ही इलेक्ट्रिक बोर्ड पे लगा हुआ है बहुत ही कुछ--

जैसा की हम देख सकते हैं इस चित्र में एक कपड़ेका ये शोरूम बहोत बड़ा शोरूम है।

एक सफेद है एक पीले रंग की एक सलेटी कलर की है।